इस तस्वीर में एक आदमी दिखाई दे रहा है जो की झाड़ू लगाते हुए दिखाई दे रहा है वो ब्लू कलर का टी-शर्ट पहना हुआ है और ग्रे कलर का पैन्ट पहना हुआ है।

इस तस्वीर मे बहुत सारे फूल की टोकरियाँ दिखाई दे रही है कोई पीले कलर की है तो ऑरेंज कलर की फूल सभी तरह की फूल दिखाई दे रही है।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

रखे हुए हैं तो किसी के दिल रखे हुए हैं किसी के हार्ट शेप रखा हुआ है सभी का सजा के रखा हुआ है ये एक म्यूजियम है।